यहाँ पे एक स्कूटी दो बाइक खड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक ड्रम रखी हुई है जो लोहे की है।

दो हजार बाईस लिखा हुआ है। यहाँ पे एक साईकल खड़ी है। यहाँ पे बहोत सा कूड़ा कचरा है। आगे बहोत सी ट्रैफिक भी है।

यह एक बिल्डिंग है जो काफ़ी लंबी है और बड़ी भी है।

यह एक कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे एक बोर्ड श लगा --

यहाँ पे एक कैम्प है जो काफी बड़ी है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है। वह भी बहोत ही बड़ी है। यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है।

यहाँ पे एक दुकान है जिसमे बहोत से डिब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हैं। यहाँ पे एक पड़ी है।